गेट में बहोत सारे डॉक्टर्स खड़े हुए हैं।

तस्वीर में हमें एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

तस्वीर में बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

हमें एक दुकान दिखाई दे रही है।